ये जिम करेवाला छिए ये जैसे साइड में बैठे वाला छै और जिम करेवाल छै।

और ओकर बाद जे छीन सबसे नीचा में सीढ़ी के तरह बनल छे ऊपर चढ़े के लिए भी बनल छै बहुत खंभा-उंभा भी छै|

एगो रूम छै रूम में जे छै बैठे वाला शीट छै कुर्सी टाइप के और रूम बहुत चमकीला छै।